नीचे में ग्रीन कलर की कार्पेट बिछी हुई है।

ऊपर में बहोत सारे छोटे छोटे बक्से भी रखे हुए हैं।

वहां पे सब प्लांट भी लगी हुई है।

यह एक आलमारी का दृश्य है आलमारी लोहे का बना हुआ है।

यह एक किताब दुकान का दृश्य है।

वहां दो मोटरसाइकल भी लगी हुई है एक टेबल भी है।

चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड में एक बड़ी सी गाड़ी लगी हुई है।

गाड़ी एक रेड कलर की है।